देखिए यहाँ पर ए वन एन एन जे बी लिखा हुआ है देख सकते है।

एने देखिये उधर ढेर सारा पंखा और मोटरसाइकिल लगा हुआ है उधर साइकिल लगा हुआ है बच्चा सब है छोटी बताइये --

कितना बढ़ियां लग रहा है देखने में और कितना सुंदर मन्दिर है कितना अच्छा लग रहा है देखने में| यहाँ का सजावट भी देख सकते हैं कितना अच्छा है| यहाँ पे ढेर सारा आदमी सब भी है देख सकते हैं।

ते हैं यहाँ पर लाल कलर का कुर्सी लगा हुआ है यहाँ पे बोर्ड भी रखा हुआ है जैसे मास्टर विधियार्थि सब को बता रहे हैं एक मैम उधर खड़ी है जैसे मैम ही होगी लड़की की जैसे लग रही है।

कुरकुरे टेढ़े मेढ़े कोको कोला सप्राइट ठंडा जैसे वगेरह वगेरह सब सामान मिलता है।

यह हॉस्पिटल है यह पर डॉक्टर बैठा हुआ है। कितना अच्छा लग रहा है देखने में देख सकते हैं और यहाँ पर डॉक्टरनी सब भी है।

और बहुत अच्छा लग रहा हैदेखने मे यहाँ पे देख सकते हैं ढेर सारा आदमी सब है बहुत बड़िया लग रहा है देखने में। बहुत सुन्दर --

देखिए यहाँ पे ये पता नहीं कौन-सा फैक्टरी है| देख सकते हैं यहाँ पे ये आदमी है खड़ा हुआ नीचे जुत्ता पहना हुआ है जीन्स पहना हुआ है देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है।

यहाँ पर देख सकते है आ यहाँ पे सैलून है यहाँ पे बाल दाड़ी बनाया जाता है देख सकते हैं कितना बड़िया से यहाँ पे आदमी --